तिवारी बुक डिपो यह छिटनी गड़हइ सी सी रोड में स्थित है।

पंकज बुक डिपो जलकल कॉम्प्लेक्स न्यू कॉलोनी रोड देबरिया में स्थित है यहाँ पर स्टेशनरी से रिलेटेड सारे सामन और सभी प्रकाशन की किताबें --

और उतना ही नहीं यह एक आइसक्रीम पार्लर भी है इससे आप अमूल के जितने भी प्रोडक्ट के जितने भी फ्लेवर के आइसक्रीम है वो पा सकते हैं।

और यहाँ पर जितने भी टीचर हैं वो हैदराबाद दिल्ली कोटा ऐसे-ऐसे बड़े जगहों से आकर यहाँ पर पढ़ाते है बच्चों को।

दुकान मानी जाती है इस दुकान पर सिया राम और रेमंड जैसे बड़े-बड़े ब्रांडों के कपड़े बेचे जाते हैं।

यह दृश्य देवरिया के बड़ा पार्क का है य यह दृश्य में जीतने भी झूले लगे हुए हैं --